मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
मन की बात के इस 98वें एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है
सेंचुरी की तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जनभागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लैटफार्म बना दिया है
हर महीने लाखों सदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुँचती है
आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है ये हमने मन की बात के अलगअलग एपिसोड्स में देखा है समझा है और मैंने अनुभव किया है स्वीकार भी किया है
मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात की थी
तुरंत उस समय देश में एक लहर सी उठ गई भारतीय खेलों के जुड़ने की इनमें रमने की इन्हें सीखने की
मन की बात में जब भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों नेइसे भी हाथोंहाथ बढ़ावा दे दिया
अब तो भारतीय खिलौनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है
जब मन की बात में हमने स्टोरीटेलिंग की भारतीय विधाओं पर बात की तो इनकी प्रसिद्धि भी दूरदूर तक पहुँच गई
लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्टोरीटेलिंग की विधाओं की तरफ आकर्षित होने लगे
साथियो आपको याद होगा सरदार पटेल की जयन्ती यानी एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने तीन कॉम्पिटिशंस की बात की थी
ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीतलोरी और रंगोली इससे जुडी थीं
मुझे यह बताते हुए खुशी है देशभर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है
बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी हैं
इन कॉम्पिटिशंस में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुतबहुत बधाई है
आपमें से हर कोई अपने आप में एक चैम्पियन है कला साधक है
आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविधता और संस्कृति के लिए आपके ह्रदय में कितना प्रेम है
साथियो आज इस मौके पर मुझे लता मंगेशकर जी लता दीदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है
क्योंकि जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी उस दिन लता दीदी ने ट्वीट करके देशवासियों से आग्रह किया था कि वे इस प्रथा में जरुर जुड़ें
साथियो लोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन में पहला पुरस्कार कर्नाटक के चामराजनगर जिले के बीएम मंजूनाथ जी ने जीता है
इन्हें ये पुरस्कार कन्नड़ में लिखी उनकी लोरी मलगू कन्दा मलागू कांडा के लिए मिला है
इसे लिखने की प्रेरणा इन्हें अपनी माँ और दादी के गाए लोरीगीतों से मिली
आप इसे सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा
कन्नड़ साउंड क्लिप 35 सेकंड्स हिंदी ट्रांसलेशन
सो जाओ सो जाओ बेबी
मेरे समझदार लाडले सो जाओ
दिन चला गया है और अन्धेरा है
निद्रा देवी आ जायेगी
सितारों के बाग से
सपने काट लायेगी
सो जाओ सो जाओ
जोजोजोजो
जोजोजोजो
असम में कामरूप जिले के रहने वाले दिनेश गोवाला जी ने इस प्रतियोगिता में सेकंड प्राइज जीता है
इन्होंने जो लोरी लिखी है उसमें स्थानीय मिट्टी और मेटल के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के पॉपुलर क्राफ्ट की छाप है
असामीज साउंड क्लिप 35 सेकंड्स हिंदी ट्रांसलेशन
कुम्हार दादा झोला लेकर आये हैं
झोले में भला क्या है
खोलकर देखा कुम्हार के झोले को तो
झोले में थी प्यारी सी कटोरी
हमारी गुड़िया ने कुम्हार से पूछा
कैसी है ये छोटी सी कटोरी
गीतों और लोरी की तरह ही रंगोली कॉम्पिटिशन भी काफी लोकप्रिय रहा
इसमें हिस्सा लेने वालों ने एक से बढ़कर एक सुन्दर रंगोली बनाकर भेजी
इसमें विनिंग एंट्री पंजाब के कमल कुमार जी की रही
इन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और अमर शहीद वीर भगत सिंह की बहुत ही सुन्दर रंगोली बनाई
महाराष्ट्र के सांगली के सचिन नरेंद्र अवसारी जी ने अपनी रंगोली में जलियांवाला बाग उसका नरसंहार और शहीद उधम सिंह की बहादुरी को प्रदर्शित किया
गोवा के रहने वाले गुरुदत्त वान्टेकर जी ने गांधी जी की रंगोली बनाई जबकि पुदुचेरी के मालातिसेल्वम जी ने भी आजादी के कई महान सेनानियों पर अपना फोकस रखा
देशभक्ति गीत प्रतियोगिता की विजेताटी विजय दुर्गा जी आन्ध्र प्रदेश की हैं
उन्होंने तेलुगु में अपनी एंट्री भेजी थी
वे अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नरसिम्हा रेड्डी गारू जी से काफी प्रेरित रही हैं
आप भी सुनिये विजय दुर्गा जी की एंट्री का यह हिस्सा
तेलुगु साउंड क्लिप 27 सेकंड्स हिंदी ट्रांसलेशन
रेनाडू प्रांत के सूरज
हे वीर नरसिंह
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंकुर हो अंकुश हो
अंग्रेजों के न्याय रहित निरंकुश दमन कांड को देख
खून तेरा सुलगा और आग उगला
रेनाडू प्रांत के सूरज
हे वीर नरसिंह
तेलुगु के बाद अब मैं आपको मैथिली में एक क्लिप सुनाता हूँ
इसे दीपक वत्स जी ने भेजा है
उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है
मैथिली साउंड क्लिप 30 सेकंड्स हिंदी ट्रांसलेशन
भारत दुनियाँ की शान है भैया
अपना देश महान है
तीन दिशा समुन्द्र से घिरा
उत्तर में कैलाश बलवान है
गंगा यमुना कृष्णा कावेरी
कोशी कमला बलान है
अपना देश महान है भैया
तिरंगे में बसा प्राण है
साथियो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी
प्रतियोगिता में आयी इस तरह की एंट्रीज की लिस्ट बहुत लम्बी है
आप संस्कृति मंत्रालय की वेबसाईट पर जाकर इन्हें अपने परिवार के साथ देखें और सुनें आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी
मेरे प्यारे देशवासियो बात बनारस की हो शहनाई की हो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की हो तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा ही
कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए
ये पुरस्कार म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में उभर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिए जाते हैं
ये कला और संगीत जगत की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ ही इसकी समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं
इनमें वे कलाकार भी शामिल हैं जिन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट्स में नई जान फूंकी है जिनकी पॉपुलेरिटी समय के साथ कम होती जा रही थी
अब आप सभी इस ट्यून को ध्यान से सुनिए
साउंड क्लिप 21 सेकंड्स इंस्ट्रूमेंट सुरसिंगार आर्टिस्ट जॉयदीप मुखर्जी
क्या आप जानते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है संभव है आपको पता न भी हो इस वाद्यमंत्र का नाम सुरसिंगार है और इस धुन को तैयार किया है जॉयदीप मुखर्जी ने
जॉयदीप जी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित युवाओं में शामिल हैं
इस इंस्ट्रूमेंट की धुनों को सुनना पिछले 50 और 60 के दशक से ही दुर्लभ हो चुका था लेकिन जॉयदीप सुरसिंगार को फिर से पॉपुलर बनाने में जीजान से जुटे हैं
उसी प्रकार बहन उप्पलपू नागमणि जी का प्रयास भी बहुत ही प्रेरक है जिन्हें मैंडोलिन में कार्नाटिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है
वहीँ संग्राम सिंह सुहास भंडारे जी को वारकरी कीर्तन के लिए यह पुरस्कार मिला है
इस लिस्ट में सिर्फ संगीत से जुड़े कलाकार ही नहीं है वी दुर्गा देवी जी ने नृत्य की एक प्राचीन शैलीकरकट्टम के लिए यह पुरस्कार जीता है
इस पुरस्कार के एक और विजेता राज कुमार नायक जी ने तेलंगाना के 31 जिलों में 101 दिन तक चलने वाली पेरिनी ओडिसी का आयोजन किया था
आज लोग इन्हें पेरिनी राजकुमार के नाम से जानने लगे हैं
पेरिनी नाट्यम भगवान शिव को समर्पित एक नृत्य है जो काकतीय डायनास्टी के दौर में काफी लोकप्रिय था
इस डायनास्टी की जड़ें आज के तेलंगाना से जुड़ी हैं
एक अन्य पुरस्कार विजेता साइखौम सुरचंद्रा सिंह जी हैं
ये मैतेई पुंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं
इस इंस्ट्रूमेंट का मणिपुर से नाता है
पूरन सिंह एक दिव्यांग कलाकार हैं जो राजूलामलुशाही न्यौली हुड़का बोल जागर जैसी विभिन्न म्यूजिक फॉर्म्स को लोकप्रिय बना रहे हैं
इन्होंने इनसे जुड़ी कई ऑडियो रेकॉर्डिंग्स भी तैयार की हैं
उत्तराखंड के फोल्क म्यूजिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पूरन सिंह जी ने कई पुरस्कार भी जीते हैं
समय की सीमा के चलते मैं यहाँ सभी अवार्डीज की बातें भले न कर पाऊं लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उनके बारे में जरुर पढ़ेंगे
मुझे उम्मीद है कि ये सभी कलाकार परफॉर्मिंग आर्ट्स को और पॉपुलर बनाने के लिए ग्रासरूट्स पर सभी को प्रेरित करते रहेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोनेकोने में दिख रही है
डिजिटल इंडिया की शक्ति को घरघर पहुँचाने में अलगअलग एप्स की बड़ी भूमिका होती है
ऐसा ही एक App है ईसंजीवनी
इस App से टेलीकंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं
इस App का उपयोग करके अब तक टेलीकंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है
आप कल्पना कर सकते हैं
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है
इस उपलब्धि के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाभ उठाने वाले मरीजों को बहुतबहुत बधाई देता हूँ
भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है ये इसका जीताजागता उदाहरण है
हमने देखा है कि कोरोना के काल में ईसंजीवनी App इसके जरिए टेलीकंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है
मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना इसके बारे में मन की बात में हम एक डॉक्टर और एक मरीज से बात करें संवाद करें और आप तक बात को पहुंचाएं
हम ये जानने की कोशिश करें कि टेलीकंसल्टेशन लोगों के लिए आखिर कितना प्रभावी रहा है
हमारे साथ सिक्किम से डॉक्टर मदन मणि जी हैं
डॉक्टर मदन मणि जी रहने वाले सिक्किम के ही हैं लेकिन उन्होंने एमबीबीएस धनबाद से किया और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमडी किया
वो ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों लोगों को टेलीकंसल्टेशन दे चुके हैं
नमस्कार नमस्कार मदन मणि जी
जी नमस्कार सर
मैं नरेन्द्र मोदी बोल रहा हूँ
जी जी सर
आप तो बनारस में पढ़े हैं
जी मैं बनारस में पढ़ा हूँ सर
आपका मेडिकल एड्यूकेशन वहीँ हुआ
तो जब आप बनारस में थे तब का बनारस और आज बदला हुआ बनारस कभी देखने गए कि नहीं गए
जी प्रधानमत्री जी मैं जा नहीं पाया हूँ जबसे में वापस सिक्किम आया हूँ लेकिन मैंने सुना है कि काफी बदल गया है
तो कितने साल हो गए आपको बनारस छोड़े
बनारस 2006 से छोड़ा हुआ हूँ सर
ओह फिर तो आपको जरुर जाना चाहिए
अच्छा मैंने फ़ोन तो इसलिए किया कि आप सिक्किम के अंदर दूरसुदूर पहाड़ों में रहकर के वहाँ के लोगों को तेले कंसल्टेशन का बहुत बड़ी सेवाएँ दे रहे हैं
मैं मन की बात के श्रोताओं को आपका अनुभव सुनाना चाहता हूँ
जरा मुझे बताइए कैसा अनुभव रहा
अनुभव बहुत बढ़िया रहा प्रधानमंत्री जी
क्या है कि सिक्किम में बहुत नजदीक का जो पीएचसी है वहाँ जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में चढ़ के कमसेकम एकदो सौ रूपया ले के जाना पड़ता है
और डॉक्टर मिले नहीं मिले ये भी एक प्रोब्लेम है
तो तेले कंसल्टेशन के माध्यम से लोग हम लोग से सीधे जुड़ जाते हैं दूरदराज के लोग
हेल्थ वेलनेस सेंटर के जो चोस होते हैं वो लोग हम लोग से कनेक्ट करवा देते हैं
और हम लोग का जो पुरानी उनकी बीमारी है उनकी रिपोर्ट्स उनका अभी का प्रेजेंट कंडीशन सारी चीज़ें वो हम लोग को बता देते हैं
यानि डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं
डॉक्यूमेंट ट्रांसफर भी करते हैं और अगर ट्रांसफर नहीं कर सके तो वो पढ़ के हम लोगों को बताते हैं
वहाँ का वेलनेस सेंटर का डॉक्टर बताता है
जी वेलनेस सेंटर में जो चो रहता है कम्यूनिटी हेल्थ Officer
और जो पेशेंट है वो अपनी कठिनाईयाँ आपको सीधी बताता है
जी पेशेंट भी कठिनाइयाँ हम को बताता है
फिर पुराने रेकॉर्ड्स देख के फिर अगर कोई नई चीज़ें हम लोगों को जानना है
जैसे किसी का चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है अगर उनको पैर सूजा है कि नहीं अगर चो ने नहीं देखा है तो हम लोग उसको बोलते है कि जाके देखो सूजन है नहीं है आँख देखो एनीमिया है कि नहीं है उसका अगर खाँसी है तो चेस्ट को ऑस्कल्टेट करो और पता करो कि वहाँ पे साउंड्स है कि नहीं
आप वॉइस कॉल से बात करते हैं या वीडियो कॉल का भी उपयोग करते हैं
जी वीडियो कॉल का उपयोग करते हैं
तो आप पेशेंट को भी आप भी देखते हैं
पेशेंट को भी देख पाते हैं जी
पेशेंट को क्या फीलिंग आता है
पेशेंट को अच्छा लगता है क्योंकि डॉक्टर को नज़दीक से वो देख पाता है
उसको कन्फ्यूजन रहता है कि उसका दवा घटाना है बढ़ाना है क्योंकि सिक्किम में ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो डायबीट्स हाइपरटेंशन के आते हैं और एक डायबीट्स और हाइपरटेंशन के दवा को चंगे करने के लिये उसको डॉक्टर मिलने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है
लेकिन तेले कंसल्टेशन के थ्राउघ वहीँ मिल जाता है और दवा भी हेल्थ वेलनेस सेंटर में फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव के थ्राउघ मिल जाता है
तो वहीँ से दवा भी लेके जाता है वो
अच्छा मदन मणि जी आप तो जानते ही हैं कि पेशेंट का एक स्वभाव रहता है कि जब तक वो डॉक्टर आता नहीं है डॉक्टर देखता नहीं है उसको संतोष नहीं होता है और डॉक्टर को भी लगता है जरा मरीज को देखना पड़ेगा अब वहाँ सारा ही टेलीकॉम में कंसल्टेशन होता है तो डॉक्टर को क्या फील होता है पेशेंट को क्या फील होता है
जी वो हम लोग को भी लगता है कि अगर पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर को देखना चाहिए तो हम लोग को जोजो चीज़ें देखना है वो हम लोगचो को बोल के वीडियो में ही हम लोग देखने के लिए बोलते हैं
और कभीकभी तो पेशेंट को वीडियो में ही नजदीक में आ के उसकी जो परेशानियाँ है अगर किसी को चर्म का प्रोब्लेम है स्किन का प्रोब्लेम है तो वो हम लोग को वीडियो से ही दिखा देते हैं
तो संतुष्टि रहता है उन लोगों को
और बाद में उसका उपचार करने के बाद उसको संतोष मिलता है क्या अनुभव आता है पेशेंट ठीक हो रहे हैं
जी बहुत संतोष मिलता है
हमको भी संतोष मिलता है सर
क्योंकि मैं अभी स्वास्थ्य विभाग में हूँ और साथसाथ में तेले कंसल्टेशन भी करता हूँ तो फाइल के साथसाथ पेशेंट को भी देखना मेरे लिए बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहता है
एवरेज कितने पेशेंट आपको तेले कंसल्टेशन केस आते होंगे
अभी तक मैंने 536 पेशेंट देखे हैं
ओह यानि आपको काफी इसमें महारथ आ गई है
जी अच्छा लगता है देखने में
चलिए मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ
इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप सिक्किम के दूरसुदूर जंगलों में पहाड़ों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं
और खुशी की बात है कि हमारे देश के दूरदराज क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया उपयोग हो रहा है
चलिए मेरी तरफ़ से आपको बहुतबहुत बधाई
थांक यू
साथियो डॉक्टर मदन मणि जी की बातों से साफ़ है कि ईसंजीवनी अप्प किस तरह उनकी मदद कर रहा है
डॉक्टर मदन जी के बाद अब हम एक और मदन जी से जुड़ते हैं
ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले मदन मोहन लाल जी हैं
अब ये भी संयोग है कि चंदौली भी बनारस से सटा हुआ है
आइये मदन मोहन जी से जानते हैं कि ईसंजीवनी को लेकर एक मरीज के रूप में उनका अनुभव क्या रहा है
मदन मोहन जी प्रणाम
नमस्कार नमस्कार साहब
नमस्कार अच्छा मुझे बताया गया है कि आप डायबीट्स के मरीज हैं
और आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेलीकंसल्टेशन करकर के अपनी बीमारी के संबंध में मदद लेते हैं
एक पेशेंट के नाते एक दर्दी के रूप में मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूँ ताकि मैं देशवासियों तक इस बात को पहुँचाना चाहूँ कि आज की टेक्नोलॉजी से हमारे गाँव में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उपयोग भी कर सकते हैं
जरा बताइये कैसे करते हैं
ऐसा है सर जी हॉस्पिटलें दूर हैं और जब डायबीट्स हमको हुआ तो हम को जो है 56 किलोमीटर दूर जा कर के इलाज करवाना पड़ता था दिखाना पड़ता था
और जब से व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है
इसे है कि हम अब जाता हूँ हमारा जांच होता है हमको बाहर के डॉक्टरों से बात भी करा देती हैं और दवा भी दे देती हैं
इससे हमको बड़ा लाभ है और और लोगों को भी लाभ है इससे
तो एक ही डॉक्टर हर बार आपको देखते हैं कि डॉक्टर बदलते जाते है
जैसे उनको नहीं समझ डॉक्टर को दिखा देती हैं
वो ही बात करके दूसरे डॉक्टर से हमसे बात कराती हैं
और डॉक्टर आपको जो गाइडेंस देते हैं वो आपको पूरा फायदा होता है उससे
हमको फायदा होता है
हमको उससे बहुत बड़ा फायदा है
और गाँव के लोगों को भी फायदा उससे है
सभी लोग वहाँ पूछते हैं कि भईया हमारा बीपी है हमारा सुगर है टेस्ट करो जांच करो दवा बताओ
और पहले तो 56 किलोमीटर दूर जाते थे लम्बी लाईन लगी रहती थी पैथोलॉजी में लाइन लगी रहती थी
एकएक दिन का समय नुकसान होता था
मतलब आपका समय भी बच जाता है
और पैसा भी व्यय होता था और यहाँ पर निशुल्क सेवाएँ सब हो रही हैं
अच्छा जब आप अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक विश्वास बनता है
चलो भई डॉक्टर है उन्होंने मेरी नाड़ी देख ली है मेरी आँखें देख ली है मेरा जीभ को भी चेक कर लिया है
तो एक अलग फीलिंग आता है
अब ये तेले कंसल्टेशन करते हैं तो वैसा ही संतोष होता है आपको
हाँ संतोष होता है
के वो हमारी नाड़ी पकड़ रहे हैं आला लगा रहे हैं ऐसा मुझे महसूस होता है और हमको बड़ा तबीयत खुश होती है कि भई इतनी अच्छी व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है कि जिससे कि हमको यहाँ परेशानी से जाना पड़ता था गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता था वहाँ लाईन लगाना पड़ता था
और सारी सुविधाएँ हमको घर बैठेबैठे मिल रही हैं
चलिए मदन मोहन जी मेरी तरफ़ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं
उम्र के इस पड़ाव पर भी आप टेक्नोलॉजी को सीखे हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करते है
औरों को भी बताइए ताकि लोगों का समय भी बच जाए धन भी बच जाए और उनको जो भी मार्गदर्शन मिलता है उससे दवाईयाँ भी अच्छे ढंग से हो सकती हैं
हाँ और क्या
चलिए मेरी बहुतबहुत शुभकामनाएँ हैं आपको मदन मोहन जी
बनारस को साहब आपने काशी विश्वनाथ स्टेशन बना दिया डेवलपमेंट कर दिया
ये आपको बधाई है हमारी तरफ़ से
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
हमने क्या बनाया जी बनारस के लोगों ने बनारस को बनाया है
नहीं तो हम तो माँ गंगा की सेवा के लिए माँ गंगा ने बुलाया है बस और कुछ नहीं
ठीक है जी बहुतबहुत शुभकामनाएँ आपको
प्रणाम जी
नमस्कार सर
नमस्कार जी
साथियो देश के सामान्य मानवी के लिए मध्यम वर्ग के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ईसंजीवनी जीवन रक्षा करने वाला App बन रहा है
ये है भारत की डिजिटल क्रान्ति की शक्ति
और इसका प्रभाव आज हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं
भारत के उपी की ताकत भी आप जानते ही हैं
दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं
कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच उपीपाय नोव लिंक लॉन्च किया गया
अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाईल फ़ोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपनेअपने देश के अन्दर करते हैं
मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है
भारत का ईसंजीवनी App हो या फिर उपी ये ईज़ ओएफ Livingको बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं
मेरे प्यारे देशवासियो जब किसी देश में विलुप्त हो रहे किसी पक्षी की प्रजाति को किसी जीवजंतु को बचा लिया जाता है तो उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है
हमारे देश में ऐसी अनेकों महान परम्पराएँ भी हैं जो लुप्त हो चुकी थी लोगों के मनमस्तिष्क से हट चुकी थी लेकिन अब इन्हें जनभागीदारी की शक्ति से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है तो इसकी चर्चा के लिए मन की बात से बेहतर मंच और क्या होगा
अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जानकर वाकई आपको बहुत प्रसन्नता होगी विरासत पर गर्व होगा
अमेरिका में रहने वाले श्रीमान कंचन बैनर्जी ने विरासत के संरक्षण से जुड़े ऐसे ही एक अभियान की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है
मैं उनका अभिनंदन करता हूँ
साथियो पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के बांसबेरिया में इस महीने त्रिबेनी कुम्भो मोहोत्शौव का आयोजन किया गया
इसमें आठ लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इतना विशेष क्यों है विशेष इसलिए क्योंकि इस प्रथा को 700 साल के बाद पुनर्जीवित किया गया है
यूं तो ये परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है लेकिन दुर्भाग्य से 700 साल पहले बंगाल के त्रिबेनी में होने वाला ये महोत्सव बंद हो गया था
इसे आजादी के बाद शुरू किया जाना चाहिए था लेकिन वो भी नहीं हो पाया
दो वर्ष पहले स्थानीय लोग और त्रिबेनी कुंभो पॉरिचालोना शॉमिति के माध्यम से ये महोत्सव फिर शुरू हुआ है
मैं इसके आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बहुतबहुत बधाई देता हूं
आप सिर्फ एक परंपरा को ही जीवित नहीं कर रहे हैं बल्कि आप भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा भी कर रहे हैं
साथियो पश्चिम बंगाल में त्रिबेनी को सदियों से एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है
इसका उल्लेख विभिन्न मंगलकाव्य वैष्णव साहित्य शाक्त साहित्य और अन्य बंगाली साहित्यिक कृतियों में भी मिलता है
विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह पता चलता है कि कभी ये क्षेत्र संस्कृत शिक्षा और भारतीय संस्कृति का केंद्र था
कई संत इसे माघ संक्रांति में कुंभ स्नान के लिए पवित्र स्थान मानते हैं
त्रिबेनी में आपको कई गंगा घाट शिव मंदिर और टेराकोटा वास्तुकला से सजी प्राचीन इमारतें देखने को मिल जाएंगी
त्रिबेनी की विरासत को पुनर्स्थापित करने और कुंभ परंपरा के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए यहां पिछले साल कुंभ मेले का आयोजन किया गया था
सात सदियों बाद तीन दिन के कुंभ महास्नान और मेले ने इस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार किया है
तीन दिनों तक हर रोज होने वाली गंगा आरती रुद्राभिषेक और यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए
इस बार हुए महोत्सव में विभिन्न आश्रम मठ और अखाड़े भी शामिल थे
बंगाली परंपराओं से जुड़ी विभिन्न विधाएं जैसे कीर्तन बाउल गोड़ियों नृत्तों स्रीखोल पोटेर गान छोऊनाच शाम के कार्यक्रमों में आकर्षण का केंद्र बने थे
हमारे युवाओं को देश के सुनहरे अतीत से जोड़ने का यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है
भारत में ऐसी कई और प्रैक्टिस हैं जिन्हें रिवाइव करने की जरुरत है
मुझे आशा है कि इनके बारे में होने वाली चर्चा लोगों को इस दिशा में जरुर प्रेरित करेगी
मेरे प्यारे देशवासियो स्वच्छ भारत अभियान में हमारे देश में जन भागीदारी के मायने ही बदल दिए हैं
देश में कहीं पर भी कुछ स्वच्छता से जुड़ा हुआ होता है तो लोग इसकी जानकारी मुझ तक जरुर पहुंचाते हैं
ऐसे ही मेरा ध्यान गया है हरियाणा के युवाओं के एक स्वच्छता अभियान पर
हरियाणा में एक गाँव है दुल्हेड़ी
यहाँ के युवाओं ने तय किया हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बनाना है
उन्होंने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति नाम से एक संगठन बनाया
इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुँच जाते हैं
शहर के अलगअलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं
ये लोग अब तक शहर के अलगअलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ़ कर चुके हैं
साथियो स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ वास्ते टो वेल्थ भी है
ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं
इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती हैं
ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है
हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं
कमसेकम प्लास्टिक के बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए
आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना सन्तोष देगा और दूसरे लोगों को ज़रूर प्रेरित करेगा
मेरे प्यारे देशवासियो आज हमने और आपने साथ जुड़कर एक बार फिर कई प्रेरणादायी विषयों पर बात की
परिवार के साथ बैठकर के उसे सुना और अब उसे दिनभर गुनगुनाएंगे भी
हम देश की कर्मठता की जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही हमें ऊर्जा मिलती है
इसी ऊर्जा प्रवाह के साथ चलतेचलते आज हम मन की बात के 98वें एपिसोड के मुकाम तक पहुँच गए हैं
आज से कुछ दिन बाद ही होली का त्यौहार है
आप सभी को होली की शुभकामनाएँ
हमें हमारे त्यौहार वोकल फॉर लोकल वोकल फोर लोकल के संकल्प के साथ ही मनाने हैं
अपने अनुभव भी मेरे साथ शेयर करना न भूलियेगा
तब तक के लिये मुझे विदा दीजिये
अगली बार हम फिर नये विषयों के साथ मिलेंगे
बहुतबहुत धन्यवाद